हमें जो अगला पिक्चर दिखाई दे रहा है वह एक नर्सरी का फोटो है ये नर्सरी बहोत ही खूबसूरत है।

जहां सिर्फ आगे सामने देखने से पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है।

छोटे छोटे पेड़ जो उगे हुए हैं काफी खूबसूरत लग रहे हैं।

और लोटा ये सब रखे हुए है बहोत सुंदर लग रहे हैं घंटी वगैरा इनकी सजावट बहुत ही सुंदर है।

लाइट भी बहोत अच्छी लग रही है गोल्डन कलर में है सारे पार्टी --

सीलिंग पे इसकी लाईटें हैं लाइन से दिख रही हैं बहुत सुंदर लग रहा है।

लड़कियां भी हैं जेंट्स भी हैं और लड़के भी हैं।

ऊपर क्या है गंदगी बहोत ज्यादा है जब बरसात आएगी छत साफ हो जाएगा यहां पे कोई भी आदमी नहीं है आसमान साफ है बिल्कुल साफ सुथरा सा लग रहा--

पीले रंग की इसकी चेयर बनाई गई है और क्रीम कलर का इसका टेबल बना है।

इसमें पैसा डालके पानी लिया जाता है और छाँये देखकर के कुछ आदमी जो हैं वहाँ पे ग बगीचे पे लेट गए हैं।

सामने एक बड़ी सी टंकी रखी हुई है यह टंकी प्युरी फायर में आता है यहां से बॉटल में पैसे लेकर के पानी लिया जाता है।

बच्चे बहोत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं माता रानी का किरदार निभा रहे हैं।

सामने हमें एक बस स्टैंड नजर आ रहा है बस स्टैंड सफेद रंग की बस स्टैंड है।

ये एक बुक स्टॉल है सामने बड़ा अच्छा सा बुक स्टाल लगा हुआ है और जमा जमा के बड़ा सुंदर से जमाया हुआ है।

और एक भाई साहब है जो उनको बात चीत कर रहे हैं शायद बुक लेने के लिए आये हैं।

सामने छोटी छोटी घास लगी हुई है और बैक साइड में मंदिर लगा हुआ है।

बच्चे बैठ कर के डांस रहें है बैठ कर के भी डांस होता है भला।

यहां पे बहोत सारे जो बेकरी आइटम है वो मिल रहे हैं मीठा चॉकलेट --